और यहां ये ऐ गो खेत है और ढेरी के गाच्छ है पत्ती का गाच्छ लग रहा है और बड़क- बड़का गाच्छ भी है । छोटा-छोटा पौधा है और रास्ता बना हुआ है। उस पे भी घांस उगल है।